एक आदमी लेटा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है जूते दिख रहे है।

इस चित्र मे एक आदमी गाड़ी पर दिख रहा है एक गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है एक कांच दिख रहा है एक नीला बोर्ड दिख रहा है एक बड़ी सी छतरी दिख रही है ।

इस चित्र मे एक कांच दिख रहा है लाइट दिख रही है एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र मे काफी लोग बैठे हुए दिख रहे है कुर्सी दिख रही है लाइटें दिख रही है जालियाँ दिख रही है।

इस चित्र में एक औरत दिख रही है एक तस्वीर दिख रही है।

इस चित्र में बहुत से आदमी दिख रहें है नीली छत दिख रही है।

उस गुफा में बहुत सारे लोग जाते हुए दिख रहे हैं।

पानी का झरना दिख रहा है काले डब्बे रखे दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है।

प्याज दिख रही है लाल बोरी दिख रही है ऊपर पीला शेड दिख रहा--

आदमी ने बैग दिक- लटकाया हुआ है दो आदमी आते हुए दिख रहे हैं पेड़ दिख रहा --